के आगे एक आदमी है जिसने अपने पूरे शरीर को व्हाइट कलर से कपड़े से कवर किया हूआ| उसके बगल मे एक मशीन रखी हुई है जो ब्लू कलर की है| उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसने व्हाइट कलर की टी-शर्ट ब्लैक कलर की जिन्स पहनी हुई है।

वो जो बालू कलर का है उसके बगल में एक बोतल रखी हुई है और वहाँ पर एक बगल से आदमी गुजर रहा हैजिसने येलो कलर की टी-शर्ट ब्लैक कलर की लोअर --

यह एक पार्क है पार्क मे बहुत सारे पेड़ - पौधे लगे हुए है यहाँ पर एक लोहे का स्टैन्ड टाइप का रखा हूआ है।

यहाँ की सब से ऊपर वाली छत पर ब्राइट कलर का बोर्ड टाइप लगा हूआ है| उसके आगे एक दीवाल है जो ये ग्रे और ब्राइट कलर की है उसके आगे एक बस खड़ी है जो येलो कलर की है।

यह एक बहुत बड़ा-सा सैलून है| सैलून के अंदर की जो दीवाल है वो व्हाइट कलर की है यहाँ पर कांच की एक पूरी रेड टाइप की बनी हुई है उसपे बहुत सारी सामन रखा हूआ है यह पर ऊपर एक टी_वी लगी हुई जो ब्लैक कलर की है।

यहाँ पर दो चेयर पड़ी हुई है चेयर का जो कलर है वो ब्लैक कलर है उस पर एक टॉवल पड़ी हुई है जो येलो कलर --

यहाँ पर चारों तरफ से पेड़ है और यहाँ पर एक आदमी है जो साइकिल के ऊपर खड़ा हूआ है।

यहां की जो दीवाल है बिल्डिंग है उस पर बहुत सारे चित्र बना हुआ है| उस पर व्हाइट कलर का कुछ लिखा हुआ है उसके निचे की दुकान फ्लोर पर बहुत सारा सामान रखे है और वहाँ पर एक आदमी जा रहा है जिसने वाइट कलर की शर्ट और निचे ब्लू कलर का गोछा

यह एक मैदान है मैदान के सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिस पर व्हाइट ग्रीन पिंक कलर का पेंट हुआ है|

ये एक स्टेज जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए है यहां पर एक आदमी है जो ब्लू कलर की शर्ट और पेंट पहने हुये है वो अब माइक पर कुछ बोल रहा है वहा पर एक वाइट कलर का स्टेज टाइप का लगा हुआ है।

यहाँ पर एक आदमी है जिसने पिंक कलर की शर्ट और वाइट कलर की पेंट पहनी हुई है उसने अपने सर को अंगोछे से कवर किया हुआ है। वह कुछ कर रहा--

हर फ्लोर पर खिड़कियां बनी हुई हैं उसके बाहर एक व्हाइट कलर का गेट टाइप का लगा हुआ है।